जिसके राइट और लेफ्ट तरफ लोहे की बाउंड्री बनी हुई है।

पार्क के अंदर कच्ची जमीन है और बहुत सारी घास भी लगी हुई है।

इस फोटो में बहुत सारे लड़के दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने एक जैसी कलर की ड्रेस पहनी हुई है।

इस फोटो में एक स्कूल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक रेस्टोरेंट दिख रहा है जिसमें कई लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे लोग अपने अपने ग्रुप के साथ बैठे हुए हैं।

फोटो में एक लॉन जैसा बना हुआ है इसके--

और बाहर रोड पर पेड़ लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक ट्रे रखी हुई है जिसके नीचे कढ़ाई रखी हुई है।

इस फोटो में एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है।

एक अलमीरा में लाइन से डॉल लगी हुई हैं।

और दूसरी अलमीरा में कुछ खिलौने बुक्स वगैरा डायरी रखी हुई है।

इस फोटो में एक गौतम बुद्ध जी की मूर्ति बनी हुई है।

फोटो में एक शॉप दिखाई दे रही है।

और दीवार के आगे मसाला ईंटे पाइप बोरी वगैरा समान पड़ा हुआ है।

इस फोटो में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत ही ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है।

रोड पर ये पेट्रोल पंप बना हुआ है और पिलर भी लगा हुआ है जिसमें लाईट जल रही हैं।

बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा है जो नीले रंग का है।

इस फोटो में एक मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है।

जमीन पर गुलदस्ते रखे हुए हैं और शीशे के गेट लगे हुए हैं।

इसमें सब लोग अपने अपने ग्रुप के साथ बैठकर कुछ खा रहे--

जो कच्ची जमीन पर है इसमें बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

इसमे एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

सब्जियां हैं आलू है गाजर मिर्च टमाटर कद्दू वगैरा बैंगन करेला लौकी सब कुछ रखा हुआ है।